यहां पर बहुत बड़ा बड़े--

सुंदर-सुंदर फूलों का दुकान में सजाया गया है।

जैसा कि आप सभी लोग इस--

यहां पर एक तालाब है और नाव भी दिखाई दे रहा है।

जो कि क्लासिकल डांस हैं और यहां पर--

यह पहाड़ों के बीच में हैं।

बहुत सुंदर सुंदर झोले दिखाई दे रहे हैं जो की सुंदर है।

जैसा कि आप सभी लोग इस पिक्चर में देख सकते है।